ये एक फोटो है जो कि किसी--

तालाब का दिखाया जा रहा है और--

इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का है और--

यह एक फोटो है जो कि किसी--

पीछे एक घड़ी है और--

किसी पहाड़ का जहां पे एक आदमी बैठा हुआ है।

जो कि पूरा काला दिखाई दे रहा है और--

जहां पे हरे लाइट्स लगाए हुए हैं।

रात के समय का लिया गया है और--

बहुत सी गाड़ियां हैं यहां पे कुछ बाइक और साइकिल से भी लोग--

ये एक फोटो है जो कि--

और ये खेलने वाली कुछ जगह लग रही है।

समझ नहीं आ रहा ये कौन सी जगह है और--

ये एक फोटो है जो कि किसी पेट्रोल पंप का है और --

कुछ गाड़ियां भी है यहां पे--

ये एक फोटो है किसी फील्ड का और--

एक बाइक लगा है जहां पर दो लोग बात कर रहे हैं।

किसी योगा क्लास का दिखाया जा रहा है।

ये एक फोटो है जो कि किसी मार्केट का है और --

डमरू भी है रखा हुआ फ्रंट में --

ये एक फोटो है जो कि रात के समय का है और --

दो आदमी भी है और एक काउंटर पे--

पीछे की तरफ एक रिक्शा है और--

यहां पे ढेर सारा बेड लगा हुआ है।

ब्लू कलर का पर्दा लगाया हुआ है।

पीछे में एक शूज है वाइट रंग का खुला हुआ।

एक कुत्ता भी है बैठा हुआ है और --

ये एक फोटो है और जो कि इसमें एक महिला है और --

पीछे के दीवाला पर कुछ पेंटिंग भी है।

बिस्तर पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

और कुछ सामान है रखा हुआ।

नीचे की तरफ डस्ट बिन है एक--

ईटे का कुछ पहाड़ जैसा है बनाया हुआ--

ये आपको फोटो है जो किसी फील्ड का लग रहा है।

किसी पेट्रोल पंप का है और--

एक कार है ब्लू रंग का--

ये एक फोटो है जो किसी--

एक हरे रंग का पानी का टंकी है।

कुछ कैलेंडर्स भी टंगे हुए हैं और--

बीच में एक रास्ता है बनाया हुआ।

ये एक फोटो किसी दुकान का लग रहा है।

लाल टेन लगे हुए हैं और--

अंदर की तरफ कुछ लोग भी बैठे नजर आ रहे हैं।

ये एक फोटो है जो कि रात के समय का लग रहा है।

ये एक फोटो किसी सैलून का लग रहा है।

और एक आदमी है जो कि --

जहां पे बहुत सारे चेयर्स लगाए गए हैं।

कुछ लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ढेर सारा लाइट है ऊपर की तरफ--

बाहर में कुछ गार्डन जैसे हैं।

ये एक फोटो है किसी स्कूल का--

जहां पे ढेर सारे औरतें हैं साड़ी पहनी हुई--

कुछ बाइक्स साइकिल भी हैं।

यह एक फोटो है किसी पेट्रोल पंप का।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

एसी और टीवी भी दिखाई दे रहा है।

सोफे हैं भूरे कलर में।

और पीछे भी ढेर सारा कपड़ा हैं।

यहां पे काले रंग का सोफा दिखाई दे रहा है।

और उसके ऊपर कैमरा है।

पीछे के तरफ बड़े पेड़ हैं।

ये एक फोटो है किसी छोटे से गुमटी का और--

और ऊपर में ढेर सारा लाइट्स हैं।

पीछे में कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

बीच में एक गोलंबर जैसा है।

किसी ईटे घर का है और --

गोल जैसा घर है यहां पे--

नीचे में बहुत सारे पेंटिंग्स हैं।

कुछ लोग पीछे में दिखाई दे रहे हैं और --

काफी लोगों का भीड़ दिखाई दे रहा है।

चाय का दुकान लग रहा हैं।

ऊपर ढेर सारा पंखा भी लगा हैं।

यह एक फोटो है जो कि--

किसी एरोप्लेन का दिखाया जा रहा है और --

और बहुत सारे बड़े पेड़ हैं।

किसी स्टेट बैंक एटीएम का है और --

कुछ फूल और पर्स भी है यहां पर --

अंदर में बहुत सारा पेड़-पौधा है।

ये एक फोटो है किसी कमरे का और --

बिस्तर पर दो कम्बल रखे हैं।

कुछ तकिए हैं बिस्तर पर रखें।

और कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं।

यह एक फोटो है जो कि रात के समय का है और --

एक आदमी है जो कि ब्लू कलर का शर्ट पहना है।

पीछे के तरफ ब्राउन पर्दे हैं।

इंट्री गेट पर कुछ बाँस गरे पड़े हैं।

एक आदमी है जो दिखाई दे रहे हैं।

इसके एंट्री गेट पर एक कार है सफेद रंग का --

यहां पे कुछ जानवर का मूर्ती है।

और बहुत सारे जगमग लाइट भी है यहां पर--